ये ब्रिज ब्लू कलर का है और यहां पर बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं।

ये टी शर्ट्स है तभी प्रिंट हुई होगी इसलिए इसे ऐसे रखा गया ताकि इसके ऊपर का जो प्रिंट है वो अच्छी तरह सुख जाए।

कुछ पानी में खेल रहे हैं बहोत सारी चट्टानें भी है यहां पर और पहाड़ भी है।